यहाँ पर एक मेला है। काफी बड़ा मेला है। बड़े-बड़े सर्कस हैं खाने-पीने की दुकाने हैं।

इसमें बाहर के लिए विंडो भी काफी है। उनमें भी काफी ऊपर देखो कितनी सजावट की है। से बनाया गया है।